जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ बच्चे यहाँ पे पेपर्स की मदद से कुछ ना कुछ बना रहे है और यह जो फर्स्ट में जो बच्चा बैठा है इसने बहुत कुछ अच्छी चीज बनाई है मुझे जैसा लग| --